और एक कार भी वाइट कलर की खड़ी हुई है।

यह पर एक सुभाष प्रसाद आई.आई.टी.आई है यहां पर एक बिच पर गार्डेन है।

और एक व्यक्ति यहीं पर आए-आए और एक बैटरी रिक्शा ग्रीन कलर का है और दो ब्लू कलर के रिक्शे हैं।